सामने दो बड़े पिल्लर्स है जिनका रंग सफ़ेद है और उधर की तरफ बोर्ड लिखा हुआ है एक आदमी लाल रंग का शर्ट पहन कर बाहर की तरफ खड़ा हुआ है और अंदर एक महिला खड़ी हुई है।

ये चित्र मे एक दिखाई दे रहा है और सामने जमीन दिखाई दे रही है और बड़े पहाड़ जिसमे बहुत सारे पेड़ और पौधे उगे हुए है और काफी घना जंगल दिखाई दे रहा है।